इसका जो गेट है वो ब्लैक कलर का जालियों वाला है।

सामने एक बिनडींग है जो मैरिज हॉल दिखाई दे रहा है।

पीछे बहुत सारे पेड़ और दिखाई दे रहे हैं जो की पत्तेदार हरे पेड़ हैं।

सामने एक चाट वाले की दुकान दिखाई दे रही है।

शीशे में एक कुछ चीजे रखी हुई है जैसे गोलगप्पे पपड़ियां --

यहां पर पेड़ लोग के साथ नीचे एक गड्ढा भी दिखाई दे रहा है।

नीचे बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग घूम रहे हैं।

पीछे एक गाड़ी है जिसका कलर व्हाइट है।

बराबर में एक खंभा दिखाई दे रहा है।

इस दुकान में कुछ कपड़े टंगे हुए है।

उन्ही सभी पर येलो कलर की चीट लगी हुई है।

एक का कलर ग्रीन है और दूसरी का ब्लैक ।

यह एक बुक स्टोर है जिसमें सामने तीन बच्चे दिखाई दे रहे।